और साइड में एक मशीन है जिसपे तोलते हैं ये सब्जियां वगैरा और दो बाटिया भी नजर आ रही है।

और इसके ईर्द गीर्द पेड़ वेड नजर आ रहे है वहां धूप भी अच्छी है।

ये एक मार्केट की फोटो लग रही है जहां पे ये लोग सब्जियां नीचे बेचते हैं ठेले पे।

मंदिर की फोटो है जो की व्हाइट कलर की है ऊपर इसपे तिरंगा लगा हुआ है।

ये एक ज्वेलरी शॉप है जहां पर सामने एक शीशे का काउंटर बनाया गया है।

और उसके आंगन में कुछ अ छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं उसको इर्द गिर्द ये जाल जैसी लगी हुई है।